मार्केट में मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे--

मछलियां भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक कैंप दिखाई दे रहा हैं।

मुझे एक सैलून दिखाई दे रही है सैलून में मुझे कुछ --

घर के बाहर मुझे टेंट दिखाई दे रहा है।

सो रही हैं और कुछ मु--

कुछ टेबल दिख रही हैं चेयर भी दिख--